यह एक मंदिर है । इसका गेट जो है वाइट और रेड मे है काफी अट्रैक्टिव अ-अट्रैक्टिव है और यह अट्रैक्टिव बहुत सारे यहाँ पे ग्रीन पेड़ है जो मंदिर को काफी अट्रैक्टिव बना रहे हैं ।

यह फूलों की माला है फूल अलग माला जो है अलग-अलग कलर में है वालवेट है एल्लो है अ ऑरेंज है पिंक है वाइट है और काफ़ी अट्रैक्टिव है इसको डेकोरेट घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा।

ये तो अभी तो इस जगह पे काम चल रही है अभी ये जगह पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है फिर भी देखिए कितना अच्छा फील्ड है ये जगह जब तैयार होगी तब तो यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा सभी लोगों को सभी यहाँ पे आ के घूम सकते हैं अभी फिलहाल में यहाँ पे काम चल रही है।